रीपेन्ट होते हुए देख रहे हैं | सामने मारुती की सुजुकी गाड़ी खड़ी है।

दायीं और से सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ने का रास्ता है।

ऊपर मे आसमानी ब्लू रंग के परदे है जिसपे लाल हरे पीले फूलों से सजावट की गई है तथा लाइटे लगाई गई हैं।

फूड स्टॉल का दृश्य है | जहां लोग आपने खाना खाने के लिए जा सकते है बर्तन लेकर के खाना खा सकते हैं।

यहाँ दूध के उत्पादक मिलते हैं ग्रीन रंग का बोर्ड उन्होंने लगा रखा है और अंदर में दूध उत्पादक के समान हमें नज़र आ रहे हैं।

सजावट किया गया है। साथ ही गुलाबी रंग के झालर लगे हैं और लैट की झरियाँ लगी हुई हैं।